यहां पर काफी सारे काउंटर बने हुये है जिसपे तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस नंबर लिखा हुआ है।

अ छाया में बाइक भी खड़ी है। और पास में कुछ के पेड़ भी है। और यहाँ पे एक रास्ता भी है। और एक आदमी भी खड़ा है।

या एक गेट है और इसके अन्दर एक और गेट है और उसके अन्दर काफी गेट हैं और यहाँ पे ए --

यहाँ पे एक और उसके ऊपर एक कपड़ा है और उसके ऊपर एक कंकाल पड़ा हुआ है और साथ में काम की मशीन भी रखी हुई हैं।

ये एक घर भी है और एक फ़ोटो भी रखी हुई है और नीचे मेट भी बिछा हुआ है।

और एक भी हैं जो इसी का है और बहोत ही बड़ा ग्लास का गेट लगा हुआ हैं और अंदर काफी लोग हैं ।